एक लोग यह पे पानी दे और कुछ लोग यहाँ पे सीमेंट मिलावट कर रहे है यहाँ पे छे सीढ़ी काम हुए यहाँ पे छे जन काम कर रहे है यह घने जंगल बने हुए है।

औरत ने सिलाई साड़ी पहनी है साड़ी को अपने कंधे के ऊपर से ढक के रखा है आदमी ने एक जो है जैकेट पहना हुआ है जो नीले रंग का जैकेट पहना है उसके पास एक मूर्ति भी लगी हुई है जिससे ऑटोमेटिक पानी गिर रही है।

यहाँ पे पीले रंग की टोपी पहन के यहाँ सारे मिस्त्री अपने मुंह मे कपड़े को बांध के काम कर रहे यहाँ पे बहोत सारे बस्ते है जिनका वजन कराया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे बहोत सारे काम हो रहे।

यहाँ पीले रंग का बैनर भी लगा हुआ है साथ ही यहाँ पे बहुत सारे आदमी खड़े है बैठे है यहाँ पे तीन चार पाँच से छह लड़के खड़े और एक औरत खड़ी हुई हैं जो गुला--

यहाँ पे होटल भी है मिठाइयों की दुकान भी है यहाँ पे बहोत सारे लोग है जो काम धाम कर रहे हैं।